ये एक मॉल है जो की मेरे घर के साइड मे है यहां के मॉल मे कपड़े बोहोत अच्छे क्वालिटी के होते है।

यह एक गाड़ी है जिसका कलर व्हाइट है यह गाड़ी को सजाया गया है लाल फूलों से जिस फूल का नाम रोज है।

यहाँ पे फैक्ट्री के सामने ही एक दीवाल बनी हुई है बहुत बड़ी सी उसके साइड में बहुत ही हरियाली है जो की जंगल जैसी दिख रही है हरे कलर में।

यह एक जगह है जहां पे दो बिल्डिंग खड़ी है छोटे- छोटे जिसका कलर व्हाइट कलर है। दो कार खड़ी है।

व्हाइट कलर की कार भी है एक कार का नंबर बी_आर ओ सेवन पी_बी डैश सिक्थ वन डबल फोर हैं।

छोटे- छोटे पौधे भी हैं हरे-भरे कलर के फूल हैं।

यह एक सड़क है सड़क के किनारे एक ओटो जा रहा है। बाइक से लोग आते जाते हैं।

यह एक मंदिर है जिसका कलर लाल कलर का है अभी शाम हो चुकी है यहाँ पे एक लाईट जल रही है।

तोअप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे सारे आयुर्वेदिक सामान उपलब्ध हैं।

यह एक नर्सरी है। यहाँ पर सारे फूल्स मिलते हैं यहाँ पर रोज़ भी मिलता है सारे कलर के फूल मिलते हैं।